साइड में जो है हार बनाया हुआ है मल्टी कलर से और पिंक कलर पर्पल कलर व्हाइट येलो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे फ्रूट ।

और यहां पे पानी का जो तालाब है। वह बहुत ऊपर तक पानी है।

और गहरा भी दिखाई दे रहा है और आजू बाजू बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और साइड में जो है पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक अ कुछ तो दिखाई दे रहा है द सिटी कैफे करके और अ जो उसका डेकोरेशन जो है ग्रास से किया हुआ है ग्रास के शीट के से --

ये एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है स्टेडियम जैसे आजू बाजू बैठने के लिए स्टेडियम का बनाया है और यहां पे बहोत सारे लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं।

बीच में कुछ पाइप जैसा दिखाई दे रहा है साइड में रेड कलर के दो मैट दिखाई दे रहे--

उस तरफ एक दो आंटी लोग दिखाई दे रहे हैं और बहोत समान दिखाई दे रहा है।

और एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है और ऊपर बहोत सारे सिंटेक्स के टाकि दिखाई दे रहे है वॉशरूम के पास--

और साइड में जो ईंट का कुछ सा गोल जैसा बनाया गया है प्रोटेक्सन के लिए और एक जार के लिए और जो घर है उसके पीछे दो नारियल का पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक केक का शॉप दिखाई दे रहा है ब्लूबेरी करके कुछ तो लिखा है और वेज और पुल करके कुछ तो लिखा हुआ है ए_सी दिखाई दे रहा है।

यहां पे फंक्शन का हॉल दिखाई दे रहा है पर्पल और वाइट कलर पर्दे लगाया हुआ है।

और बॉर्डर के तरफ में छोटे छोटे झाड़ दिखाई दे रहे हैं और स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे --

ये एक मंडप का हॉल दिख रहा है शादी का और जो डेकोरेशन किया लाइट ऑरेंज व्हाइट कलर और बीच में अ डिजाइन वाला ऑरेंज कुछ तो कपड़ा लिया है।

और बहोत सारे सोफे रखे हुए हैं सामने की तरफ स्पीकर लगाया है कूलर लगाया है।

यहां पे अह एक गार्डन जैसे दिख रहा है जहाँ पर बीच में जो है रस्ता बनाया है और इस तरफ जो है जो गार्डन है वो थोड़ा कचरा दिखाई दे रहा है।

और एकदम एंड में जो एक अ बाइक दिखाई दे रही है।

सेलोटेप है कलर वाला फेविकोल है इंक है और स्टेपलर है।

यहां पे साइड में जो है अह बनाया हुआ है कुछ तो और बहुत सारे गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक बस दिख रहा है और गेट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

और कुछ अ अ बीच में जो है अ एक बोर्ड जैसे कुछ लगाया है हर तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जो ब्राउन कलर के है वाइट कलर के है और बॉक्स भी दिख रहा है बहुत सारे --

जहां पे बीच में कुछ तो लिखा हुआ है और बीच में से रस्ता बनाया है।

और बीच बीच में छोटे छोटे अ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो शेप में दिया हुआ है।

बहोत सारे दांत का कुछ प्लास्टर का कुछ तो सब अ शॉप्स वगैरह दिख रहे हैं इंटीरियर का --

यहां पे बीच में एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पे आजू बाजू में एक बैंक दिखाई दे रहा है और घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे चार अं टेंट दिखाई दे रहे हैं चार पांच ग्रीन कलर के और यहां पे साइड में जो आजू बाजू उसके ग्रास उगा हुआ हैं।

साइड में कुछ मोटर लगाया हुआ है और एक घर भी दिख रहा है।

जो वॉल का पेंट किया है वो ग्रीन कलर का और वाइट कलर का है और एक लाइट है।

ये एक मार्ट दिखाई दे रहा है कोई शॉप है यहां पे गुलाब जामुन का दिखाई दे रहा है कुछ बिस्किट का और चॉकलेट्स का दिखाई दे रहा है।

ऊपर पर्क और फाइव स्टार और कोकोनट का है मैगी दिखाई दे रही है जो एटी टू रुपीज लिखा हुआ है ऊपर कुछ पारले जी सिक्सटी थ्री का है।

यहां पे बहुत सारे बुक जो है डेकोरेशन में लगाया है गोल गोल में और बहुत सारे शेल्व्स बनाए जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स है तरह तरह के।

यहां पे एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर तीन अह जो है तीन साइज में अह लकड़ी रखा हुआ है।

अ बहोत सारे बांध के सकडि जो होता है उसे बांध के और साइड में जो है बहोत सारे काट के रखा हुआ है वो दिख रहा है।

ग्रीन येलो कलर के भी पत्ते दिखाई दे रहे हैं और फ्रूट्स वगैरा भी दिख रहे हैं कुछ तो।